कुछ फूल लाल कलर के और नारंगी कलर के दिख रहे हैं रखे हुए।

सामने की तरफ पैकेट रखे हुए हैं सामान के और एक टंकी भी रखी हुई है।

जिसमें काफी ने कोट पहन रखा है।

यह देखने में एक बगीचा लगता है।

पे काफी सारे पर्दे रोड में लटके हुए दिखाई पड़ रहे--

और इसमें डमरू वाली टॉल भी लगी हुई है।

जिसमें एक आदमी बाइक पर बैठता हुआ दिख रहा है एक बच्चा बाइक के पास खड़ा हुआ है।

सामने की तरफ चैनल लगा हुआ है ऊपर की तरफ बैनर लगा है जिसमें लिखा हुआ है एस_बी_आई ए_टी_एम ।

ये एक ग्राउंड है जिसमें काफी सारे लंबे लंबे हरे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

ये टेबल है इसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है।

चार पांच आदमी भी झंडे फहराते हुए दिखाई पड़ रहे है और जमीन पे छोटी छोटी हरी हरी घास है।

जिसने पीले कलर की चेक वाली शर्ट पहन रखी है नीचे काली पेंट पहन रखी है।

और बहुत सारी टूटी फूटी ईंटे भी दिख रही है।